एक आदमी बैठा हुआ है जो इन सब सामान को बेच रहा है।

और काफी अच्छी-अच्छी चीजें गिफ्ट देने के लिए यहां पर मिलती हैं।

चकोर चकोर लाइट लगाई गई है।

जहां पर यशु भाई लटके हुए हैं।

यहां पर एक प्लस का सिंबल बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक पुल को दिखाया गया है।

यहां पर काफी सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक मार्केट की गली की है।